और टैटू का बाजू में एक लाइट लगा हुआ है और फोटो फ्रेम लगा है और एक चप्पल स्टैंड र--